और इसके एक बराबर में तिरंगा भी नजर आ रहा है।

और एक बराबर में और मोटरसाइकिल भी खड़ी है।

और नीचे टेल बिछी हुई है।

और पीछे बुग्गी मे गन्ने बहु ब बहुत से भरे हैं।

और बहुत से ऊपर तार भी जा रहे हैं।

और इसके अंदर लाइट भी जल जल रही है।

और एक भी दिखाई दे रही है।

और यहां पर एक तार जा रहे हैं।

और एक गाटर खड़ा है।

और एक बोर्ड भी लग रया है।

और बहुत से पेड़ भी खड़े है।

आउर इसके दोरे एक रेलिंग जा रही है।

और यहां पर ऊपर तार भी जा रहे हैं।